ये एक स्कूल है डबल फ्लोर का इस्पे येलो कलर गेट है बाजु छोटे छोटे झाड़ है उर खुला आसमान है।

लास्ट में कुछ लिखा हुआ है और यहा तिन लोग इंतजार कर रहे --

ये एक छोटा सा जिम है ओहा पे एक आदमी--

उपर साइड में एक छोटी से खिड़की है।

ग्रीन कलर का हे यहाँ पर दो रेलवे ट्रैक हे और यहाँ--

ये एक फंक्शन चल रहा हे यहाँ पर बहोत सारे लोग कुछ फस्तिवेल मना रहे हैं।

अ यहां बहोत सारी लाइटिंग भी है और फाई जी का बोर्ड भी--

पिंक कलर के शूस पहन कर ठहरे हुवे हैं ।

बहोत सारे भेडिये हे और इधर शेर हाथी वो चीज भी बहोत हे और गुलाबी कलर के भी फुग्गे बहोत हैं।

आदमी बेठा हुवा हे हाथ धेरे हुए है।

डी हुई दीवाल है यहा पर बाजु एक छोटी सी--

टी_बी हैं जो ए_सी का कलर भी वाइट हैं।

ये घर का काम आधा हो चुका हैं।

और इधर ककरे और रेती और लकडिया भी बहोत सारी रखी हुई हैं।

ये एक पार्टी हॉल हैं यहाँ पर एक खिड़की--

इसीके बाजु में वाई -फाई बॉक्स भी हैं।

रेड कलर वाइट कलर की बसे खड़ी हुई--

ये एक छोटी सी कंपनी हे यहाँ पर--

बड़े बड़े डबो में एक छोटे डबे से--

और ये बहोत बडी मशीन हैं मशीन --

और ये गई छत्त का कलर वाइट हैं।

फोटो खीचा रहे हे एक लड़का चश्मा पहन कर खड़ा हुवा हैं।

ये एक मुर्गी हे यहाँ पर तीन चार मुर्गिया भी हैं।

छोटीसी बक़ीड भी रखी हुई है वहा पर मुर्गा पानी पी रहा है।

ये एक के_के ज्वेल्लेर्य्स गोल्ड हे सिल्वर --

रेड कलर में लिखा हुआ हैं बागुल--

ये एक बंद घर हे और ये घर का कुछ काम चल रहा हैं।

आड़ ह झाड पर फल भी लगे हुवे हैं।

और ये बिल्डिंग के उपर के हिस्से में कांच की एक गैलरी भी हैं बालकनी --

यहाँ पे एक ट्रेंनिंग बड़ी सी ऑफिस हैं।

बाहर हिस्से में दो दो स्कूटर खड़े हुवे हैं।

ये एक छोटा सा ट्वेंटी फोर ऑवर वाला ए_टी _ऍम हैं।

ये एक साइकिल शॉप हे यहाँ पर एक आदमी साइकिल चला रहा हैं।

आज बहोत फैन और बहोत सारी लाइट भी हैं।

यहाँ पर कुछ लोग खाना खा रहे हैं।

कुर्सी भी हे यहाँ पे एक भगोना हैं।

वो आदमी बेठ कर कटींग कर लेने का इंतजार कर रहे--

ये एक ब्लड डोनेशन कैंप हे यहाँ पर--

कुछ खेल रहे हैं कुछ लेटे हुए है।

पूल के सामने हरे भरे झाडे भी बहोत हे और इधर--

ये एक खुली रोड हे रोड के बाजु में एक जीप भी ठहरी हुई हे।